यह एक रेल दिखाई दे रही है रेल के बाहर एक र-रोड दिखाई दे रहा है रोड में यहाँ हरी-हरी धूपा-धूप भी दे दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रहे एक खंभा भी नजर आ रहा --

एक भैंस नजर आ रही है वो खरोटे में चारा चर रही है।

एक फर्श दिखाई दे रहा है एक खेत दिखाई दे रहा है खेत में हरी-हरी घास लगी हुई है।

यहाँ एक मकान है जिसमें एक गेट लगा हुआ है वह उस गेट के अंदर एक और गेट है उसके अंदर है वहाँं का वहाँं का सामान दिखाई दे रहा है यहाँ एक--